यह एक रेस्टोरेंट टाइप का है जहां पर खाने का सामान मिलता है ।

ऊपर आकाश नीला लग रहा है एक सुंदर दृश्य की हम चर्चा इस फोटो में कर सकते है।

और ऊपर में पंखा लगा हुआ है।